और उसका गेट रेड और व्हाइट कलर का है। और नीचे बहुत सारी कार्स खड़ी हुई है। और लेफ्ट हैन्ड साइड पे एक ट्रक खड़ा हुआ है। और कुछ लोग भी खड़े हुए है।